course administration in moodle में spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम moodle में course administration के बारे में और
इस tutorial में हम उपयोग कर रहे हैं: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 and और firefox web browser web browser
आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने एक moodle website स्थापित किया है और आपको एक teacher के रूप में पंजीकृत किया है
इस tutorial के शिक्षार्थियों के पास moodle पर teacher login होना चाहिए
कम से कम administrator द्वारा उन्हें एक course असाइन किया गया हो
यदि नहीं तो कृपया इस website पर संबंधित moodle tutorials देखें
browser पर जाएँ और अपनी moodle site खोलें
अपने teacher username और password विवरण के साथ login करें
हम teachers dashboard में हैं
बाईं ओर navigation menu में my courses में calculus पर ध्यान दें
कृपया ध्यान दें सभी courses जिनके लिए आप teacher या student के रूप में नामांकित है यहाँ सूचीबद्ध होंगे
calculus course पर click करें
हमने पूर्ववर्ती tutorials में course topics और summaries अपडेट किए हैं
यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो कृपया पूर्ववर्ती tutorials के assignments को देखें
अब हम कुछ उपयोगी course settings के बारे में जानेंगे
section के ऊपरी दाईं ओर gear icon पर click करें
edit settings पर click करें फिर सभी sections को विस्तृत करने के लिए ऊपरी दाईं ओर expand all पर click करें
यहां देखी गई settings को administrator द्वारा परिभाषित किया गया था जब यह course बनाया गया था
general section में हमारे पास course full name है यह course पेज के शीर्ष पर प्रदर्शित name है
course short name course navigation और course से संबंधित emails में प्रदर्शित name है
course category पहले से ही admin द्वारा set किया गया है
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार course start date course end date और course id number को बदल सकते हैं
description section में course summary textbox देखें मैं मौजूदा कंटेंट को हटा दूंगा और निम्नलिखित टाइप करूंगा
मेरे छात्र मेरे course के मुख्य पेज पर इसे देखेंगे
फिर course summary files field आता है
default रूप से केवल jpg gif और png file types course summary files के रूप में अनुमति देता है
फ़ाइल upload करने के 3 तरीके हैं: फ़ाइल को box में खींचें और छोड़ें
ऊपरी बाईं ओर upload या add icon पर click करें downward ऐरो पर click करें
यदि आप upload या add icon या downward arrow पर click करते हैं file picker dialog box खुलता है
बाईं ओर के menu पर upload a file option पर click करें
browse या choose file button पर click करें फिर अपनी मशीन से इच्छित फ़ाइल का चयन करें
मैं system से calculus jpg चुनूंगी
आप इसे save as field में टाइप करके एक अलग name दे सकते हैं
संबंधित fields में author और license विवरण निर्दिष्ट करें अंत में नीचे upload this file बटन पर क्लिक करें
तो हम course summary files कैसे upload कर सकते हैं
इसके बाद course format आता है course format छात्रों के लिए resources और activities को व्यवस्थित करने के तरीके को संदर्भित करता है
format dropdown में 4 options हैं
हमारे admin ने topics format चुना है हम इसे वैसे ही रहने देंगे
अगली setting hidden sections के लिए है
यह तब उपयोगी हो सकता है जब कोई निश्चित topic हो जो शिक्षक द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया हो यह सेटिंग यह निर्धारित करती है कि छात्रों को hidden sections कैसे प्रस्तुत किया जाए
इस option को चुनने से छात्रों को संक्षिप्त रूप में सामग्री प्रदर्शित होगी
इस option को चुनने से छात्रों का कंटेंट छिप जाएगा
हम इसे अभी के लिए default रूप में रहने देंगे
अगला dropdown course layout है इस पर click करें
हम इस option को चुनकर एक पेज में सभी sections दिखा सकते हैं
यहाँ अन्य option show one section per page है
हम इसे अभी के लिए show all sections in one page पर रहने देंगें
अगला appearance section है
show gradebook to students option पर ध्यान दें
यह option निर्धारित करता है कि क्या कोई छात्र उन grades को देख सकता है
यदि यह पहले से ही default रूप से चयनित नहीं है तो हम show activity reports को yes में बदलेंगे
यह सुनिश्चित करता है कि एक छात्र अपने profile page से उसकी activity reports देख सकता है
हम files का अधिकतम size set कर सकते हैं जिन्हें इस course के लिए uploaded किया जा सकता है
files additional materials assignments आदि के लिए uploaded की जा सकती है
हमारे admin ने इसे 128mb set किया है जो कि अधिकतम file size है
हम अन्य सभी settings को उनके default values पर रहने देंगे
नीचे scroll करें और save and display button पर click करें
topic names के ऊपर announcements link पर ध्यान दें
इससे छात्रों को अनिवार्य जानकारी नवीनतम समाचार घोषणाओं आदि के बारे में पता चल जाएगा
पेज के ऊपरी दाएं कोने पर gear icon पर click करें और turn editing on पर click करें
note: course में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको editing on करना होगा
अब announcements के दाईं ओर edit पर click करें और फिर edit settings पर click करें
और description में मैं निम्नलिखित टैक्स्ट type करूंगी
display description on course page check करें यह link के this नीचे विवरण प्रदर्शित करेगा
अन्य सभी settings को छोड़ दें जैसे वे हैं
नीचे scroll करें और save and return to course button पर click करें
अधिक announcements जोड़ने के लिए announcements टाइटल पर click करें
add add a new topic button पर click करें subject में minimum requirements type करें
message type करें this course requires you to submit a minimum of 3 assignments and attempt 5 quizzes to pass
ध्यान दें कि checkbox discussion subscription checked किया गया है और noneditable है
इसके बाद attachments है आप या तो संबंधित files को यहां खींच या छोड़ सकते हैं या upload कर सकते हैं
यदि आप चाहते हैं कि घोषणाएँ forum के शीर्ष पर दिखाई दें तो pinned checkbox पर click करें मैं इस पर टिक करूंगी
अगले checkbox पर tick करें
अगले section display period को विस्तृत करें
default रूप से ये visible हैं इसका अर्थ है posts हमेशा दिखाई देगा
नीचे scroll करें और post to forum button पर click करें
एक सफलता message प्रदर्शित होता है post authors के पास posts में कोई बदलाव करने के लिए 30 min हैं
breadcrumb में calculus link पर click करें
add मैं इस section में विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ एक पेज जोड़ती हूँ
general section के नीचे दाईं ओर add an activity or resource link पर click करें
जब आप चुनते हैं तो इस गतिविधि का वर्णन पढ़ें
फिर नीचे add button पर click करें
name field में detailed syllabus type करें
मैं description textbox को खाली छोड़ दूंगी क्योंकि शीर्षक स्वव्याख्यात्मक है
मैं इस page content textbox में इस calculus course का विस्तृत पाठ्यक्रम प्रविष्ट करूँगी
यह कंटेंट इस tutorial के code files link में उपलब्ध है
नीचे scroll करे्ं और save and return to course button पर click करें
अब हम अपने account से लॉगआउट करेंगे ऐसा करने के लिए ऊपर दाईं ओर मौजूद user icon पर click करें अब log out ऑप्शन चुनें
मैं आपको दिखाती हूं कि यह पेज किसी छात्र को कैसा लगेगा
मेरे पास priya sinha नामक छात्र की id है
मैंने छात्र priya sinha के रूप में प्रवेश किया है अब मैं बाईं ओर calculus पर click करूँगी
इस तरह छात्र इस पेज को देखेगा ध्यान दें कि इस पेज के ऊपरी दाईं ओर पर कोई gear आइकन नहीं है
ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्र course के किसी भी भाग को edit नहीं कर सकते
अब हम student id से log out करेंगे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
इस tutorial में हमने सीखा moodle में course administration
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियतकार्य है
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपय समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ